घर में आधा बगीचा भी बना हुआ है।

ए_टी_एम के सारे गेट कांच के बने हुए हैं यहां पर कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसका डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत है।

इस बुटीक में ए_ सी_ और पंखे भी लगे हुए हैं।

यहां पर कई रंग बिरंगे फूल भी लगे हुए हैं।

काफी आलीशान मंदिर की फोटो लग रही है।

यहां पर बाइक सुधारने के लिए कई सारे टूल्स में रखे हुए हैं।

और इस पूल गेम पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है।

इस रेस्टोरेंट के चारों तरफ बहुत ही हरियाली का माहौल है।

ये एक लाइब्रेरी की फोटो है।

जोकि सेक्शन में बटी हुई है।

ये एक रेस्टोरेंट की फोटो है।

ये एक रेस्टोरेंट की फोटो है।

इसके बाहर एक काउंटर भी रखा हुआ है।

सुरमई कलर के दो गधे दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं।

जोकि रेड और वाइट फ्लावर के साथ यलो पर्दों के साथ किया गया है।

यह एक रेलवे स्टेशन की फोटो है।